उसका हमें बोनट खुला हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे हमें आइल और पानी पड़ा हुआ दिख रहा है पीछे हमें नीले रंग का गेट भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड में हमें एक खंभा दिख रहा है।